यह एक घर का इमेज है।

काले कलर की कुछ ड्रॉर दिख रही हैं।

कुछ लाइटिंग भी करी गई है जो कि सारी लाइट जल रही हैं।

जिसके ऊपर एक एसी लगा हुआ है।

और तीन मरकड़ी भी हैजो कि चल रही है।

सामने में कुछ फोटोज भी हैं।

पानी दिख रही हैं गंगाजल --

और साइड में तीन चार चेयर भी लगे हुए हैं।

लकड़ी का पूरा काम किया गया है।

इसके साइड में दो पेड़ भी है और सामने में दो तार के पेड़ भी हैं।

यह एक योगा क्लास है।

नर्से और कुछ आम पब्लिक भी योगा कर रही हैं।

यह एक तालाब की इमेज है।

सामने में एक छोटी सी --

वाइट कलर की नाव खड़ी है।

यह एक रोड की तस्वीर है।

और सामने में फुटपात भी दिख रहा है।

यह एक रोड की तस्वीर है।

यह एक डांस क्लास का इमेज है।

सी से काफी सारे लगे हुए हैं।

साइड में डोर है जो कि बंद है।

और हाथ को आगे और पैर को पीछे किए हुए है।

जिस पे कुछ-कुछ पोस्टर चिपकाए हुए हैं।

और टेबल पर कुछ-कुछ सामान भी रखे हुए हैं।

और लाइटिंग की काम भी की गई है।

इस तस्वीर में सामने में एक रोड दिख रही है।

उसके पीछे एक टावर भी है।

जिसमें से तार जा रही हैं।

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और साइड में बैलून भी चिपकाया गया है।

यह एक रोड के साइड की इमेज है।

सामने में छोटी सी टेबल दिख रही है।

उसके साइड में दो चेयर लगी हो।

के का पिक्चर भी चिपकाया गया है।

चार पौधे लगाए गए हैं।

नीचे वाइट कलर की टाइल्स की--

यह एक तालाब की तस्वीर है।

और यह शाम का टाइम है।

छोटी सी एक पेड़ भी नजर आ रही है।

यह एक मस्जिद की तस्वीर है।

वहां पे एक आदमी भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में काफी सारी ग्लासेस दिख रही हैं।

सामने में एक रेड कलर की बस भी खड़ी है।

कॉलोनी की बाहर की तस्वीर है।

कॉलोनी को काफी अच्छे से सजाया गया है बैलून से।

यह एक पार्क की तस्वीर है।

जिसमें एक आदमी बैठ के--

यह वाइट कलर की पिलर भी लगी हुई है।

एक आदमी मास्क पहना हुआ जा रहा है।

और एक औरत भी जा रही है।

यह एक पार्क की तस्वीर है।

नीचे काफी सारे लोग इकट्ठे हैं।

इस तस्वीर में सामने में एक --

उसके नीचे काफी सारे पौधे भी लगाए गए हैं।

और साइड साइड से पेड़ भी लगाए गए हैं।

एक औरत नजर आ रही है।

इसके ऊपर एक बलून लगाया गया है।

इस इमेज में एक रोड दिख रहा है।

जो कि गोल होते हुए जा रहा है।

जिसके नीचे कुछ लोग भी हैं।

पीछे एक टावर भी नजर आ रहा है।

नीचे रेड कलर की टाइल्स बिछाई गई हैं।

और नीचे ग्लास की भी--

बॉल के साथ खेल रहा है।

और पीछे एक छोटी सी झूला लगी हुई है जिस पे दो बच्चे झूल रहे हैं।

नीचे ग्रीन कलर की घास भी है।

और काफी सारे लोग वहां पे इकट्ठा--

यह तस्वीर में एक आदमी--

उस दुकान की तरफ देख रहे हैं।

और वह पेट्रोल डलवा रही है।

एक मौलाना बैठ के--

एक नदी दिख रही है।

जिसमें पानी भड़ा हुआ है।

और पानी की तरफ देख रहे हैं।

पीछे के साइड में एक लड़की भी खड़ी है।

यह एक सब्जी का गार्डन है।

इस तस्वीर में एक रूम है।

साइड में दो-तीन चपले भी रखी गई हैं।

और एक सोफा भी लगा हुआ है।

पीछे और भी लगी के चेयर हैं।

जैसे कि बिल्कुल खाली है।

इसमें काफी सारे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

जिस पे काफी सारी लड़कियां--

सारी लड़कियां कुछ-कुछ डिस्टेंस पे हैं।

और एक बाइक भी दिख रही है जो कि लगी हुई है।